यहाँ देख रहे होंगे ये मंदिर और लाइटें हैं | जली हुई हैं और इसमें कलर भी पुता हुआ है पीला है और सामने एक गार्डन भी है।

ब्रांड बॉक्स देखना और यहाँ चैनल लगा हुआ है और एक अंग्रेजी दावा का भी दुकान है।

कुछ लोग बैठे भी हैं और यहाँ खम्बे लगे हुए हैं झंडे लगे हैं उसमें बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे होंगे आपको लगे--